पास मे एक इमारत नज़र आ रही है।

इस पर कुछ प्लास्टिक कवर भी लगाया गया--

यह एक हॉल है जिसमें कई तरह की समां--

ये एक खाली पारक में दिखाई दे रही है।